यह व्यक्ति बैठा हुआ है और आराम कर रहा है।

ये किसी पार्क का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें--

इसकी जो दीवारें हैं वो वाइट कलर की हैं और साथ में तीन चेयर दिखाई दे रही हैं टेबल --

और उसके सामने बहोत सामान रखा हुआ है कुछ डब्बे टाइप का या फिर कोई--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

एक व्यक्ति है जो दो व्यक्ति अपने काम में लगे हुए हैं और एक व्यक्ति जो सामने की तरफ देख रहा है अपना कार्य करते हुए--

ये किसी स्वीट्स की दुकान हैं जिसमें काफी सारी मिठाईयां दिखाई दे रही हैं और एक लेडीज खड़ी हैं एक--

काफी सारे सायकल है किसी का रंग यल्लो है तो कोई लाल कलर का है तो --

बैठे हुए हैं रेलिंग की है स्टील की--